लिबर ऑफिस ड्रा में सामान्य ड्राइंग कैसे करें इस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि निम्न का उपयोग करके साधारण ड्राइंग कैसे करें
बुनियादी आकार जैसे लाइन्स ऐरोज़ और आयत
बुनियादी ज्यामितीय आकार सिम्बल्स स्टार्स और बैनर्स
आप यह भी सीखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे चुनें स्थानांतरित करें और डिलीट करें
हाशिया मार्जिन सेट करने के लिए रूलर और ऑब्जेक्ट की स्थान सेट करने के लिए अलिग्न टूलबार का उपयोग करें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
का उपयोग कर रहे हैं
ऑब्जेक्ट को परिभाषित करें
ऑब्जेक्ट से तात्पर्य है ड्रा में उपयोगित आकार या आकार का समूह जैसे लाइन्स स्क्वायर्स ऐरोज फ्लोचार्ट आदि
इस स्लाइड में दर्शाये गये सभी आकार ऑब्जेक्ट के रूप में उल्लिखित हैं
फाइल वॉटरसाइकिल को खोलें जो डेस्क्टॉप में सेव की गई थी
हम पहले सीखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट कैसे चुनें
मानिए कि हम क्लाउड चुनना चाहते हैं
तो हम सामान्यतः इस पर क्लिक करेंगे
ऐसा करने पर आठ हैंडल्स दिखाई देते हैं
हैंडल्स छोटे नीले या हरे स्क्वायर होते हैं जो चुनित ऑब्जेक्ट के भागों पर दिखाई देते हैं
आप बाद के ट्यूटोरियल्स में हैंडल्स और उनके उपयोग के बारे में अधिक सीखेंगे
अब अपनी ड्राइंग में कुछ अधिक ऑब्जेक्ट जोड़ें
जमीन को प्रस्तुत करने के लिए एक आयत जोड़ें
ड्राइंग टूलबार में बेसिक शेप्स पर क्किक करें और फिर रेक्टेंगल पर क्लिक करें
अब कर्सर को पेज पर स्थानांतरित करें
आप केपिटल आई के साथ प्लस का चिन्ह देखेंगे
बायें माउस बटन को पकड़कर रखें और आयत बनाने के लिए ड्रैग करें
अब माउस बटन को छोड़ दें
अब जमीन से बादल तक जलवाष्प की गतिविधि को दिखाने के लिए कुछ ऐरो बनाएँ
लाइन बनाने के लिए ड्राइंग टूलबार में लाइन पर क्लिक करें
कर्सर को पेज पर स्थानांतरित करें
आप तिरछे डैश के साथ एक प्लस का चिन्ह देखेंगे
माउस के बायें बटन को पकड़कर रखें और ऊपर से तल तक ड्रैग करें
आपने एक सीधी लाइन बना ली है
लाइन में दो हैंडल्स हैं
अब लाइन पर एक तीर शीर्ष जोड़ें
हम अब लाइन को चुनेंगे
कांटेक्स्ट मेन्यू को देखने के लिए राइट क्लिक करें और लाइन पर क्लिक करें
आप लाइन डायलॉग बॉक्स देखेंगे
अब अरो स्टाइल्स टैब पर क्लिक करें और फिर अरो स्टाइल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें
यह उपलब्ध अरो स्टाइल्स प्रदर्शित करता है
अरो नामक पहले ऑप्शन को चुनें
ओक पर क्लिक करें
यह लाइन के दोनों अंत भागों पर तीर शीर्ष की चुनित स्टाइल को जोड़ेगा
लेकिन हमें तीर शीर्ष केवल लाइन के एक अंत भाग पर ही चाहिए
तो पहले हम CTRLZ दबाकर इस बदलाव को अंडू करेंगे
कांटेक्स्ट मेन्यू को देखने के लिए फिर से राइट क्लिक करें
अबLine टैब पर क्लिक करें
यहाँ अरो स्टाइल्स के नीचे आप स्टाइल नामक फील्ड देखेंगे
आप दो ड्रॉप डाउन बॉक्सेस देखते हैं प्रत्येक लाइन के अंतभाग के लिए एक
बायें ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें और अरो चुनें
दायें ड्रॉप डाउन बॉक्स में नोने चुनें
ओक पर क्लिक करें
ध्यान दें कि एक तीर शीर्ष लाइन के अंत भाग में जुड़ गया है
हम लाइन्स एंड अरोज ऑप्शन का उपयोग करके भी ऐरो बना सकते हैं
अब इस ऐरो के आगे दो और ऐरो बनाएँ
ड्राइंग टूलबार से जीटीजीटी लाइन्स एंड अरोज पर क्लिक करें और लाइन स्टार्ट्स विथ अरो चुनें
कर्सर को ड्रा पेज पर स्थनांतरित करें
माउस के बायें बटन को पकड़कर रखें और ऊपर से नीचे ड्रैग करें
इस तरह के ऐरो बनाना आसान है क्यो ऐसा नहीं है
इसी तरह से एक और ऐरो जोड़ते हैं
इस ट्यूटोरियल को रोकें और इस नियत कार्य को करें
अपनी फाइल माइवाटरसाइकिल में एक लाइन बनाएँ
लाइन चुनें और लाइन डायलॉग बॉक्स खोलें
लाइन प्रॉपर्टीज फील्ड में लाइन्स के लिए स्टाइल रंग चौड़ाई और पारदर्शिता बदलें
अरो स्टाइल्स फील्ड में ऐरो की स्टाइल बदलें
अब एक स्टार बनाएँ
ड्राइंग टूलबार पर जाएँ और स्टार्स के आगे छोटे काले त्रिकोण पर क्लिक करें
अब 5 पॉइंट स्टार चुनें
अब बादल के बगल में कर्सर रखें
माउस के बायें बटन को पकड़कर रखें और बायीं ओर ड्रैग करें
आपने एक स्टार बना लिया है
अब सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को डिलीट और स्थानांतरित कैसे करें
एक ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए इसे चुनें और इसे इच्छित स्थान पर ड्रैग करें
अब माउस बटन को छोड़ दें
आप ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए कीबोर्ड पर अप डाउन और साइड ऐरो का उपयोग भी कर सकते हैं
ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करना आसान हैक्या ऐसा नहीं है
एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए इसे चुनें और फिर कीबोर्ड पर डिलीट की दबाएँ
ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया हैक्या यह आसान नहीं है
अब बुनियादी सहायक रूलर और अलिग्न टूलबार के बारे में सीखते हैं
रूलर पेज के मार्जिन हाशिया के सेटअप और माप की इकाइयों को बदलने के लिए उपयोगित है
अलिग्न टूलबार ऑब्जेक्ट के स्थान के लिए उपयोगित है
रूलर सबसे ऊपर और ड्रा कार्यक्षेत्र के बायीं ओर प्रदर्शित होता है
माप की इकाइयों को सेट करने के लिए सबसे ऊपर रूलर पर राइट क्लिक करें
आप माप की इकाइयों की एक सूची देखेंगे
सेंटीमीटर पर क्लिक करें
ऊपर रूलर के लिए माप की इकाई अब सेंटीमीटर सेट हो गई है
उसी तरह बायें पर रूलर के लिए माप सेट करें
सुनिश्चित कर लें कि ऑब्जेक्ट्स माप में बने हों हमेशा दोनों रूलर्स के लिए समान इकाइयों को सेट करें
आप देखेंगे कि सक्रिय रूलर सफेद रंग में है
रूलर का अंतभाग पेज मार्जिन वेल्यू को दर्शाता है जिसे हमने पेज सेटअप में सेट किया है
देखते हैं कि रूलर ऑब्जेक्ट्स के लिए माप कैसे दर्शाता है
बादल को चुनें
क्या आप रूलर पर दो छोटे शुरू और अंत के चिन्ह देख सकते हैं
ये बादल के किनारों को दर्शाते हैं
यदि आप इन चिन्हों को रूलर पर स्थानांतरित करते हैं आप देखेंगे कि आकृति तदनुसार परिवर्तित होती है
रूलर पेज पर ऑब्जेक्ट का आकार दिखाता है
यह हमें पेज पर ऑब्जेक्ट के स्थान और पेज सीमाओं को दर्शाने के लिए भी सक्षम बनाता है
अब दूसरे बुनियादी सहायक Align टूलबार पर जाएँ
हम अलिग्न टूलबार का उपयोग चुनित ऑब्जेक्ट को दायें बायें ऊपर नीचे और केंद्र में पंक्तिबद्ध करने के लिए करते हैं
अलिग्न टूलबार को सक्षम करने के लिए मैन मेनू पर जाएँ और व्यू पर क्लिक करें
व्यू मेन्यू के नीचे टूलबार्स पर क्लिक करें
आप टूलबार्स की सूची देखेंगे
अलिग्न पर क्लिक करें
आप अलिग्न टूलबार देखेंगे
अब देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पंक्तिबद्ध कैसे होता है जब हम अन्य अलिग्न ऑप्शन्स का उपयोग करते हैं
बादल को चुनें
अलिग्न टूलबार पर लेफ्ट पर क्लिक करें
बादल बायीं ओर पंक्तिबद्ध हो गया है
अब दो ऑप्शन्स सेंटर्ड और सेंटर के मध्य अंतर समझते हैं
हम वृत्त को सेंटर और फिर सेंटर्ड में पंक्तिबद्ध करेंगे
पहले वृत्त को दायीं ओर पंक्तिबद्ध करें
वृत्त को चुनें और अलिग्न टूलबार में राइट पर क्लिक करें
अब अलिग्न टूलबार में सेंटर पर क्लिक करें
वृत्त केंद्र पर पंक्तिबद्ध हो गया है
ऑप्शन सेंटर ऑब्जेक्ट को पेज के ऊपरी और तल के हाशिये के ठीक मध्य में केंद्रित करता है
यह ऑब्जेक्ट को पेज की चौड़ाई के अनुसार स्थानांतरित नहीं करता है
अब अलिग्न टूलबार से सेंटर्ड चुनें
वृत्त पेज के केंद्र में पंक्तिबद्ध हो गया है
ऑप्शन सेंटर्ड वृत्त को पेज के केंद्र में पंक्तिबद्ध करता है
यह ऑब्जेक्ट को पेज के ऊपरी और तल के हाशिये और पेज की चौड़ाई के अनुसार स्थानांतरित करता है
अब हम ऑब्जेक्ट्स को अपनी नमूना ड्राइंग के अनुसार वापस सही स्थान पर स्थानांतरित करेंगे
इसे बंद करने से पहले फाइल को सेव करना याद रखें
यहाँ आपके लिए दूसरा नियत कार्य है
माइवाटरसाइकिल फाइल में पेज जोड़ें
इन दो आकृतियों को बनाएँ
ऐरो कीज़ का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करें
कोई ऑब्जेक्ट चुनें जिसे आपने बनाया है और इसे डिलीट करें
कुछ ऑब्जेक्ट्स का आकार मापने के लिए रूलर का उपयोग करें
फिर अलिग्न टूलबार का उपयोग करें और ऑब्जेक्ट्स को पेज के केंद्र में पंक्तिबद्ध करें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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि सामान्य ड्राइंग कैसे बनाएँ बुनियादी आकारों का उपयोग करके जैसे लाइन्स ऐरोज और आयत बुनियादी ज्यामितीय आकार सिम्बल स्टार्स और बैनर्स
आपने ऑब्जेक्ट को चुनना और डिलीट करना
और ऑब्जेक्ट के उपयुक्त स्थान के लिए रूलर और अलिग्न टूलबार का उपयोग करना भी सीखा
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित हैआईआईटी मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद